एक दीवार दिखाई दे रही है बिल्डिंग की जिसमें एक येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें दो आदमी बने हुए हैं यहाँ पर एक बड़ा -सा ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें से कुछ लोग बा मिट्टी बाहर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर बोहोत सारी मोमबत्तियाँ जलती हुई दिखाई दे रही है जो काफी सुंदर लग रही है ये एक दुकान के सामने की जगह है यहाँ पर और कुछ टूटा- फूटा रास्ता दिखाई दे रहा है दुकान के अंदर एक टेबल लगा हुआ हैं।